यहा पे सीमेंट का रास्ता है और सीमेंट के रास्ते के बाजु मे बहुत सारे पोदे लगे हुए है और उसके बाजू मे बहुत सी बड़ी सी बिल्डिंग है।

यहा पे एक मिट्ठी का रास्ता है और उस पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर है।

ऊपर की तरफ दीवार पे भी कुछ लगा हुआ है।

यहा पे एक जमीन है जमीन के ऊपर बोहत सुंदर ब्लॅक कलर की गाड़ी खड़ी हुई है उस गाड़ी के पीछे एक दुकान है उस दुकान के बाहर एक बड़ासा पोस्टर लगा हुआ है।

एक लाइट भी है और ऊपर की तरफ बहुत सारे पेड़ भी है और घना आसमान भी है।

यह एक बहुत सुंदर जगह है यह जगह आजुबाजुसे बहुत ही रमणीय लग रही है। यहा पे बहुत सारे हरे भरे--